चाय अभी फिलहाल सभी के घर में बनता है और सभी पसंद भी करते हैं।

ये कोक तो बहुत ही अच्छा है।

हम लोग की तरफ ऐसा नहीं है। पटना में है एक पूल ।

हमलोग यही टी.वी. में या पढ़े हुए है की पाटर --

और प्रचलित भी ये डांस है।

अच्छा लग रहा है और साफ-सुथरा भी सड़क है।

ये बच्चे लोग के डांस डांस एकेडमी है यहां पे बच्चे लोग के डांस सिखाया जाता है जो कि अभी के दौर मे डांस सिखना बहुत जरुरी है और अच्छा भी लगता है।